--मे के हमे बहोत सारा पानी दिखाई दे रहा हैं पानी हमे बहुत दूर दूर तक फैला हुआ नजर आ रहा हैं जो की देखने मे बहुत अच्छा लग रहा है।

टेनिस खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं उनके हाथ में हमे एक बैट दिखाई दे रहा है जिससे कि वो बॉल खेलते हुए नज़र आ रहे हैं और हमें यहाँ पर एक घड़ी लगी हुई दिखाई दे रही है जो कि गोल नज़र आ रही हैं।

यहाँ पर एक खंभा दिखाई दे रहा हैं जो पानी के अंदर डूबा हुआ नजर आ रहा हैंखंभे के ऊपर हमे बहोत सारी वाइरे जाते हुए दिखाई दे रही हैं जो की हमें बहुत दूर दूर तक जाते हुए नजर आ रही हैं हमे यहाँ पर बहोत सारा--

हमे यहाँ पर ईंट की बनी हुई टंकी दिखाई दे रही हैं टंकी मे हमे बहुत सारा पानी दिखाई दे रहा हैं टंकी के बाजू से हमे बहुत सारी घास दिखाई दे रही है और हमे यहाँ पर गिट्टी दिखाई दे रहा है फावड़ा नजर आ रहा हैं और हमे यहाँ पर बहुत सारे घमेले दिखाई दे रहे हैं और हमे यहाँ पर--

--जो की लाल और सिल्वर कलर की दिख रही हैं जो की देखने मे हमे बहुत ही बढ़िया लग रही है जैसे कि हम राजा कुर्सी कहा जाता है और हमे यहाँ पे बहोत सारे फू--

यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा समुंद्र दिखाई दे रहा है समुंद्र के बाजू में हमें बहुत सारे पत्थर दिखाई दे रहे हैं और--

एक बहुत ही बड़ी पर्किग एरिया दिखाई दे रहा है जो की बिल्डिंग के नीचे लग रहा हैं और हमे यहाँ पर बहोत सारी गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही है जिसमे से हमे एक स्कूटी खड़ी नजर आ रही हैं स्कूटी का कलर हमे यहाँ पर काला दिखाई दे रहा हैं और हमे यहाँ पर एक बाइक दिखाई दे बाईक --

यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा टेबल दिखाई दे रहा है टेबल के ऊपर हमे एक सफेद कलर की प्लेट रखी हुई दिखाई दे रही हैं प्लेट के ऊपर हमे एक बहुत बड़ा एक पराठा रखा हुआ दिखाई दे रहा हैं जो देखने मे ब्राउन कलर का दिख रहा हैं और खाने मे एक नंबर टैस्टी लग लग रहा है।